पासाम पास में ही दो स्लाइड बड़ी सी स्लाइड है इसमें एक स्लाइड का रंग नारंगी है एक स्लाइड का रंग हरा है।

पहाड़ नजर आ रहे हैं । उन पहाडों के बीच में हमे एक लड़का और एक लड़की नजर आ रहे हैं । लड़के ने --

वहाँ पर बैठने की प्लेस पे दो लड़के बैठे हैं जिसने ब्राउन कलर की टी-शर्ट जीन्स पहनी हुई है। एक ने ऑरेंज कलर की टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई है।

यह कोई दूकान दिखाई दे रही है जिसका नाम महबूब रेडीमेड कलेक्शन है।

सामने एक जिम है जिसमें आधे के अन्दर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। चार लोग वाकिंग कर रहे है जिन जिसमे से दो ने --